और मंदिर के साइड में है लाइट के खम्बे भी है और बिजली के वायर भी दिख रहा है।

जो कि मैरेज या रिसेप्शन में बहुत ही यूनिक तरीके से डेकोरेशन किया गया है।

और अंदर में एक फ्रीज भी दिख रहा है जो कि एल.जी. का है।

यह एक जिम सेंटर है जो कि जिम के सारे मशीन अवेलेबल है ।

मेडिकल में एक पंखा लगा है और मेडिकल में एक भईया बैठे है जो कि सेल्फी ले रहे है ।

और ऑइल पंप के साइड में उसका ऑइल पंप वाले का ऑफिस भी है।